गेट भी देख पा रही हूं।

मैं यहां बहोत सारे पेड़ देख पा रही हूं।

मैं यहां कुछ आदमी और कु--